प्लेट है प्लेट में बिरयानी दिखाई दे रही है बिरयानी के में चावल --

कुछ स्टिकर्स बने हुए है ऊपर एक पंखा लगा दिखाई दे रहा है।

यह एक बिल्डिंग या दुकान की तरह दिखाई दे रही है जिसके उपर एक बहुत बड़ा सा पोस्टर --